कारे खड़ी हुई है।

एक बिल्डिंग बन रही है।

टेबल सोफे रखे हुए हैं।

काफी सारा सामान रखा हुआ है।

बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ --

बाईकें भी खड़ी हुई है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पीछे दो लोग भी चल रहे है।

सामने बड़ा मैदान बना हुआ है।

एक मंदिर बना हुआ है।

ए बड़ा मैदान बना हुआ है।

लोग भी खड़े हुए हैं।

चटनी रखी हुई है ग्लास भी है।

एक मंदिर बना हुआ हैं।

लाइट भी जली हुई है।

ए बड़ा जिम बना--

बड़ा हॉल बना हुआ है।

सामान रखा हुआ है।

एक बड़ी टेबिल और --

पे लाइटें लैंप लगे हुए हैं।

दुकानों में और छत पे लाइटें भी है।